और इसके सामने गाड़ी खड़ी हुई है बाइक भी खड़ी हुई है।

और एक बंदा तो मास्क लगा कर बैठा हुआ है और एक खड़ा हुआ है बैग लेकर।

और ये ए_सी रखी हुई है।

बाहर की तरफ पेड़ खड़े हुए हैं।

और बहुत अच्छा व्यू है।

और ये सामने एक बोर्ड लगा हुआ है भारतीय स्टेट बैंक का।

और यहां पे एक घर है।

किसी दुकान का लग रहा है ये हरी दीवार है।

उधर एक दूसरे तरफ व्यक्ति खड़े हुए हैं।

और जो की बहोत अच्छा लग रहा है देख कर।

ये एक घर है।

इसमें एक गाड़ी है और दो इंसान काम कर रहे हैं।

और पीछे की तरफ एक और गाड़ी है और उनका सामान रखा हुआ है पहिए हैं।

और यहाँ पे गमले भी रखे हुए हैं।

और पीछे की तरह एच_पी का ये लगा हुआ है पेट्रोल के रेट लिखे हुए है।

अलग अलग कलर के सैंडिल रखे हुए हैं। बोहोत अच्छे शीशे लगे हुए हैं।

पेड़ बहोत सारे पेड़ हैं और झरना भी गिर रहा है जो कि बहोत अच्छा लग रहा है।

फोटो में नीचे मैट बीछे हुए हैं।

और ये बहुत अच्छा उसके ऊपर पेड़ खड़ा हुआ है।

और दूसरी तरफ भी बहोत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं।

और इधर भी एक पेड़ खड़े हुए हैं।

और रास्ता भी है जाने के लिए।

और ये बीच में एक तालाब है।

जोकि बहोत अच्छी है और पीछे जो है बाॅक्स रखा हुआ है।

पेपरस से रखे हुए हैं पीछे की तरफ बोर्ड है।

और यहां पर एक इंसान बैठा हुआ है।

चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई हैं।

लड़के लड़कियां हैं और झंडे फहरा रहे--

और बंदे हाथ जोड़ रहे हैं।

एक इस चित्र में बहोत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं कुर्सियों पे।

और पीछे की तरफ उस दीवार पे गाड़ी का चित्र भी लगा हुआ है।